और एक प्लेट बिरयानी है चिकन बिरयानी और रेड कलर का चेयर भी रखा है और काफी सारा फोटो खाने का लगाया है पंखा भी टंगा हुआ है।

चेयर पे बैठे हुए हैं और कुछ आदमी खड़े हैं। एक स्कूल का प्रोग्राम है और बगल में एक मैम खड़ी हैं |

सामने एक घर है। घर के बाहर काफी सारी भीड़ लगी हुई है।